दीवार पर लाभ शुभ लिखा हुआ है।

एक आइसक्रीम का पोस्टर लगा हुआ हैं।

हरे भरे पेड़ पौधे भी है।

इस चित्र में पेड़ के नीचे एक सीमेंट की--

दूसरे व्यक्ति को नीले रंग का कपड़ा बांधा गया है।

इस चित्र में छतरी के बाहर कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

छतरी के आगे लोहे का नीला बोर्ड लगा हुआ है उसपर सफेद रंग से --

फाउंटेन दिखाई दे रहा है जोकि बंद पड़ा हुआ है।

है और उन पर पत्ते भी बहोत कम है।

एक मूर्ति लक्ष्मी जी की है। दूसरी मूर्ति--

ठेले पर श्री लक्ष्मी पाव भाजी पुलाव लिखा हुआ--

कुछ ग्रे रंग की है कुछ हॉफ --

सारे जूते चप्पल बॉक्स के अंदर जमे हुए रखे हैं।

मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है।

उसपे कुछ ड्राइंग भी बनी हुई है।

हॉल में बहोत सारे पिलर भी--

उस पर श्री श्याम स्पेयर हाउस एंड रेफ्रिजरेशन --

सूट पहने हुए खड़ा है उसने टाइ भी लगा रखी है।

एक शोरूम का है शोरूम का नाम श्री सतगुरु टायर --

इस चित्र में एक खंडर जैसी--